कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और लकड़ी की बनी हुई टेबलें भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ टेंट भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ छोटे छोटे कंकर भी दिखाई दे रहे है सामने की तरफ मुझे टी की छत दिखाई दे रही है।

और एक लोह की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ अलमारीयो के अंदर--

जिम के अंदर व्हाइट कलरों में कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और एक व्यक्ति की तस्वीर भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी के टेबल दिखाई दे रही है जिस पे एक साहेब का कप भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं जिन्हें--

कांच का एक बक्सा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ केक भी दिखाई दे रहे हैं उनके पास में ही कुछ --